सड़क दिखाई दे रही है सड़क की दूसरे ओर देखने पर इटो रेलिंग दिखाई दे रही है जो की इटो की बनी हुई है वे काले सफ़ेद धारियों से बनी हुई है यह जंगल पेड़ दिखाई दे रहे यहाँ हरियाली बहुत दूर दूर दिखाई दे रह है घर दिखाई दे रहा है।

यह पानी बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है एक और पुल दिखाई दे रहा है जिसके पिलर नीचे दिखाई दे रहे है जहां तक मिट्टी फैली है पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ बहुत दूर तक पेड़ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है बहोत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे है सुबह का समय है जिसमें सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है प मेरे लिए बादल दिखाई दे रहा है और प्राह्य परछाई पानी में पड़ रही हैं।

कुछ लिखा हुआ हैं और कुछ सामान पैक हैं ऊपर की छत दिखाई दे रही हैं वह पे लाइटे लगी हुई हैं कुछ रैक दिखाई दे रही हैं रैक में सामान रखा हुआ हैं।

एक फर्श पत्थर का फर्श दिखाई दे रहा है जिस पर एक मूर्ति रखी हुई है मूर्ति सफेद रंग की है जिसमें एक मानव की आकृति जिसके सर पर मुकुट सजा हुआ है उसने हाथ बासुरी ली हुई है।

एक एक अलमीरा दिखाई दे रही हैं जो की भूरे रंग हैं जिसपे बादामी रंग की पर पट्टियां जा रही हैं रैक दिखाई दे रही हैं एक--

जालिया दिखाय दे रही है जिस पर पीले रंग का रंगा हुआ हैएक अ सोकेस रखा हुआ है।

नीचे कुछ लेप दिखाय दे रहा है लेप में कुछ समान टी शर्ट राखी हुई है रंग बिरंगे टी शर्ट पे लेविस लगी हुई है नीचे फर्श दिखाई दे रहा हैऔर निचे गुब्बारे दिखाय दे रहा है जो कि नीला रंग --

ट्रक दिखाई दे रहा है जहां पर उपर टी सेट दिखाई दे रहा है जिस पर स्टील के कांच बने है।